इस फोटो में एक पार्क --

एक झूला दिखाया हुआ है।

और बहुत सारे गमले भी--

बहुत ही सुंदर गेट बनाया हुआ है।

इस फोटो में एक आदमी--

उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है।

जलती हुई नजर आ रही है।

और उसके पास लाल रिंग के--

ये फोटो एक कॉलोनी की हैं।

जहां पर ब्रिस्ता लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक--

और बैठने के लिए--